बाहर की ओर कुछ महिलाए वह बच्चे खडे नज़र आ रहे हैं नीचे की ओर काले रंग का फर्श लगा नज़र आ रहा है।

बाहर की और कुछ बिजली के खंबे लगे नज़र आ रहे है वह तारे भी बिजली की नज़र आ रही है ऊपर की और आसमान का रंग सफेद है।

यह चित्र एक जंगल का नजर आ रहा है जंगल में कई तरह के जानवर नजर आ रहे हैं जिनका रंग काला व सफेद हैं।

मुख्य द्वार को लोहे की जंजीर से बंद किया नज़र आ रहा है व आगे की ओर कुछ पुरुष व महिला जाते नज़र आ रहे है।